मुझे इस इमेज में एक महल दिखाई दे रहा है। महल दिखने में काफी बड़ा है। इस महल के पास में --

मकान भी दिखाई दे रहे हैं। महल के बाहर।

मुझे इस इमेज में केनेरा बैंक का पोस्टर दिख रहा है और एक चैनल गेट भी लगा हुआ है।

मुझे इस इमेज में एक बैंक दिखाई दे रही है बैंक के बाहर एक चैनल गेट लगा हुआ है एवं --

यहाँ पर बहोत सारी दुकाने हैं।

वरदमन हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

मुझे इस इमेज में एक एटीएम दिखाई दे रहा है। एटीएम के बाहर दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति के हाथ में हेलमेट है और एक व्यक्ति --

इसमें एक ब्लू कलर का गेट लगा हुआ है। इसके बाहर एक लम्बा-सा रोड है।

इस इमेज में मुझे बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति खड़े हैं।